एक उप्पर नीचे सेउप्पर से उप्पर वाली जगह दिख रही है गेटें दिख रही है उसमे भी रेलिंग लगी हुई है लोहे की डिजाइनर उप्पर की जो छत बनी हुई है

यहाँ पर एक बड़ा सा ग्राउंड बना हुआ है ग्राउंड बहोत सारे बच्चे है जो क्रिकेट खेल रहे है एंड बहोत सारी दिवाले वगैरा बनी हुई है यहाँ पे आसपास में ग्राउंड के और बड़े-बड़े पेड़ भी है।

बड़े बड़े पेड़- पौधे दिए हुए हैं लाइट के खंबे लगे हुए है आसमान मे बादल है जो की बहुत काले हो रहें है।

एक बड़ा सा ग्राउंड बना हुआ है एक वाइट कलर की बड़ी सी दीवार बनी हुई है उसके बाहर बहुत सारी बाइके खड़ी हुई हैं।

यहाँ पर एक बड़ा सा ग्राउंड बना हुआ है यहाँ पे बड़ी सी व्हाइट कलर की दीवाल खींची हुई है उसके बाहर चार झंडे लगे हुए हैं दो ऑरेंज कलर के दो येलो कलर के बाइके खड़ी हुई है।

थोड़ी बड़ी- सी बिल्डिंग बनी है जिस जिसका कार्यालय विभाग बना हुआ है ये व्हाइट कलर की बिल्डिंग हैं।

दिवार बनी हुई है वाइट कलर की झण्डे लगे हुए है। चार दो ऑरेज कलर के दो येल्लो कलर के बाइके खड़ी हुई है। कार खड़ी--

--पर एक बड़ा सा स्टेडियम में झंडे लगे हुए हैं ऑरेंज कलर एंड व्हाइट कलर में येलो कलर इसमें मैच चल रहा है एक टीम ऑरेंज कलर के कपड़ों में एक टीम वाइट कलर के अंपायर वगैरा खड़े हुए हैं।